और मुझे आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का दरवाजा खुला है और एक फ्रीजर भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी कोकाकोला और ठंडे की बॉटल्स डाली हुई है।

इस तस्वीर में मुझे हॉस्पिटल का रूम दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे दीवार में एक प्लस से लिखा हुआ है रिसेप्शन में मुझे कुछ लड़कियां बैठी हुई नज़र आ रही हैं जो कंप्यूटर चला रही हैं।

दीवारों पर मुझे कार्टेज नजर आ रहे हैं जो ब्राउन कलर के हैं।